इन ए टी ऍम ऐसा इनका नाम है।

झाड़ दिख रहे है ऊपर ढक--

मोबाइल नंबर सेवन सेवन --

बहोत सारे लोग दिख रहे है एक वाइट चेयर दिख रही है।

हिंदुस्तान पेट्रोलियम एच पि ऐसा भी लिखा है ब्लू कलर में डिज़ाइन किया है।

है वाइट कलर का बांधा गया है एक आदमी के हाथ में एक बुक है एक ने उस--

और फ्रूट दिख रहे है बनाना भी दिख रहे है और पाइनएप्पल भी --